एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

इस ढाबे का नाम बाबा दा ढाबा है।

दो पाइप दिखाई दे रही है।

यह फोटो एक कैफे के बहार का है।

और दो लड़कियां सेल्फी ले रही है।

उसका नाम द सिटी कैफे है।

यहां पर बहुत सारे लोग हैं।

कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं।

यहां एक बगीचे में योगा कर रही है।

यह फोटो एक ए_टी_एम का हैं।

यह ए_टी_एम अंदर से दिखाया है।

यहां फोटो पर्दे की दुकान का है।

ने इन परदो का फोटो खींचा है।

वॉशरूम अप्लायंसेज़ के शोरूम का है।

यह ऑफिस बहोत बड़ा है।

यह फोटो बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यह फोटो शादी के एवेन्यू का है।